सामने एक बरा मिठाई का दुकान देखने को मिल रहा है जहां पर कई सारे आइसक्रीम वाले फ्रिज देखने को मिल रहा हैं।

यहां पर एक कैमरा भी देखने को मिल रहा है।

यहां पर एक आदमी भी मौजूद है।

सामने एक दुकान देखने को मिल रही हैं यहां पर बहोत सारे बल्ब लगे हुए है।

और बहुत सारे दुकान देखने को मिल रही है।

कुछ संतरा हरा है कुछ संतरा पीला देखने को मिल रही है।